ट्रेंड्स मॉल है उसमें रेड बोर्ड है व्हाइट बोर्ड पोल लाइट --

रामनाथ साउंड सिस्टम है एक बाइक लगा हुआ है पोल है उसपे सजावट का समान है राम न --